बाजू में एक बैल बैठा है जो ब्लैक कलर का है एक कार खड़ी है।

लेसून ब्लू कलर की बोरी में रखे हुए हैं। ग्रे कलर का फर्स है। एक आदमी बैठा हुआ है जिस ने ओरेंज कलर की शर्ट पह --